यह एक बहोत बड़ी नाउ की दुकान है। नाउ की दुकान में शीशा लगा हुआ है। एक के बाल कट चुके हैं। एक की शेव बन रही है।